बहुत अच्छे लग रहे है देखने में बहुत बढ़िया से बनाया हुआ है देखने में बहुत अच्छे लग रहे है।

रंग पेंट भी किये हुए है एक बच्चे यहां पर चढ़े हुए है लाल और हरा कलर का बनाया हुआ है बहुत अच्छे लग रहे है देखने में बहुत बढ़िया से सजाया हुआ है बहुत अच्छे लग रहे है देखने में।

यहां देख रहे हैं दो लोग हैंयहां ढेर सारे लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं यहाँ लग रहा है बस लगा हुआ है बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में बहुत बढ़िया सजावट किए हुए हैं ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं अच्छे से घर बनाया हुआ है।